यह एक क्लासरूम है जिसमें एक बहुत बड़ा व्हाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है वहा पे क्लासरूम में बहुत सारी टेबले बिछी हुई हैं।

एक जगह पे स्टील की बालकनी बनी हुई है। पारदर्शी बाल्कनियां है और ऊपर आसमान है।

यह एक पार्क है जिसमें बहोत सारे बच्चे बच्चियां नजर आ रहे हैं। बहोत सारी बाइकें यहां पे खड़ी हुई हैं ब्लैक कलर की। आसपास हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

यहाँ पर एक अ बस है। बस ब्लैक कलर की रेड कलर की और वाइट कलर से पुती हुई है और यहाँ पे शीशे भी काफी सारे लगे हुए हैं। बसों के एक साइड में मिरर लगे हुए हैं यहाँ पर।